इस शो-रूम में टोटो बहुत ही कम इंटरेस्ट में देते है।

वह बहुत ज्यादा फूल --

यह बाजार बहुत ही बड़े हैं।

यहाँ बर्थ डे केक भी मिलता --

इस मैदान के बीच में एक छोटा घर बनाये हुए हैं।

यह बहुत ही अच्छे फसल है।

यह रोड बहुत ही अच्छे है।

यह दुकानदार सभी कक्षा के किताब रख --

अपने बॉडी को बना रहे है।

सभी काउंटर में अलग-अलग अफसर बैठते है।

हैं इस स्टेडियम में बैठने के लिए काफी जगह बनाए हुए हैं।

जैसे पेंट गंजी जंगिया अंडरवियर ब्लाउज सभी रेडीमेड कपड़े यहाँ लेने के लिए बहोत सारे लोग --

यहाँ बहुत सारे मोटरसाइकिल चार चक्का खड़े है।

लोग बाजार कर रहे है।